इस फोटो में एक मकान दिखाया गया है।

इस फोटो में एक कमरा दिखाया गया है।

और ऊपर कुछ ऐसी भी लगी हुई हैं।

और बराबर में एक मशीन भी रखी हुई हैं।

इस फोटो में एक कमरा दिखाया गया है।

कुछ जाले भी लगे हुए है।

कुछ बैनर भी दिखाए गए हैं।

और कुछ आदमी भी दिखाएं गए हैं।

और नीचे कुछ हरा हरा घास भी दिखाया गया है।

और पीछे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाये गए है।

और नीचे एक पाइप भी पड़ा हुआ है।

इस फोटो में एक दुकान दिखाई गई है।

और ऊपर कुछ आदमी भी दिखाए गए हैं।

इस फोटो में एक लेडिज और कुछ बच्चे दिखाए गए हैं।

इस फोटो में एक मकान दिखाया गया है।

और एक फ्रिज भी रखा हुआ है।

और एक छोटी सी टेबल भी रखी हुई है।

इस फोटो में एक दुकान दिखाई गई है।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

और कुछ चमकीली पन्नी भी दिखाई दे रही हैं।

और कुछ परदे भी लगे हुए हैं।

कुछ ऊपर लाइटिंग भी बनी हुई है और कुछ बैनर भी लगे हुए हैं।

इसमें कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

इस फोटो में कुछ शेप दिखाई गई हैं।

और नीचे कुछ कुर्सियां भी दिखाई गई हैं।

और कुछ कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं और एक सोफा भी रखा हुआ है।

एक धड़कन नापने की भी मशीन रखी हुई है।